जो के काले कलर के है दुकान के अंदर दो आदमी है बहार तीन आदमी है जो के बैग रखे हुए है।

एक लाइब्रेरी रूम है जिसमें बुक रखने की स्टैंड बानी है स्टैंड काले कलर की है।

जिसमें कांच लगा हैं कमरे में सफेद कलर का पेंट हुआ है और ऊपर पंखा लगा हुआ है जो भी सफेद कलर का है।

एक दुकान है जो की कपड़े की दुकान है उसमें एक स्टैंड लगा है जिसमे सभी कपड़े टंगे हुए हैं।

एक मंडप है और जिसमे पति बिच्छी है एक मदिर में है जिसमे लगी है जिसमे कुछ लोग बेठे है मंडप के निचे बैठे है कुछ लोग सामने बेठे हे।

नीले कलर के फूल लगे हैं।

एक बस जिसमे नीले कलर की शीट है उसमे ऊपर काले कलर का शीट थोड़ा सा बना है ऊपर कुछ सामान टंगा हुआ लग रहा हैं।